कुछ लोग नजर आ रहे हैं कुछ खड़े हैं और कुछ बैठे नजर आ रहे हैं उनकी चप्पल जूते इत्यादि एक साइड रखे हुए हैं।

पीछे कुछ पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं। एक बहोत बड़ा मैदान नजर आ रहा है। एक लेडीस के हाथ मे एक झाड़ू दिखाई दे रहा है।

जिनमें से दो लोग खड़े हुए हैं दूसरी नाव में दो लोग बैठे हुए हैं कुछ पंछी नजर आ रहे हैं।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है साइड से एक भी दिखाई दे रही है।

यह एक गेट दिखाई दे रहा है जो की छड़ों से बना हुआ है बहुत बड़ा गेट है पीछे घर भी दिखाई दे रहा है बाउन्ड्री दिखाई दे रही है।